यह एक जिम है जिसमे दो मिरर है काफी सारी जिम की मशीन्स रखी हुई है ।

और यहाँ पर नीचे दुकानें दिखाई दे रही हैं शटर दिखाई दे रही है ब्लू कलर का एक बोर्ड लगा है।

जिसके घुट दोनों घुटनों में चोट लगी हुई है।

और यहां पे एक लड़का एंकरिंग कर रहा है।

और चारों तरफ बैलून्स है लगे हुए है और यहाँ पर किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन किया जा रहा है ऊपर स्टार लगे हुए है ।

अ जो की चार्ट पेपर से अ क्राफ्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर टीचर्स बैठी हैं।

और कुछ फुटबॉल्स रखी हुई है।